कुछ बसें वगैरह भी है जो कि पीले कलर की हैं ये डिवा डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल नाम दिख रहा है।

महिला है जोकि मोबाइल हाथ में लेकर बाहर की ओर खड़ी है फर्श वगैरा भी काफी साफ सुथरा अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक काले कपड़ों में व्यक्ति दिखाई दे रहा है और कुछ महिलाएं भी हैं कैमरे वाला भी है।

दिखाई दे रहा है कूलर वगैरा है जो कि आसपास काफी अच्छे से सफाई की गई है और टेबल वगैरा भी काफी अच्छी और प्यारी लगाई गई है।

आसपास से गाड़ियां यानी कार वगैरह भी काफी सारी इधर से उधर जा रही है। रोड एकदम साफ सुथरी दिखाई दे रही है।

और काफी सारे लोग हैं जोकि उधर प्रोग्राम की तरफ भी देखते दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर लाइटिंग और फ्लावर्स वगैरा भी रखे हुए दिखे काफी अच्छे दिखाई दे रहा डी_जे वगैरा भी लगे गए है साउंड वगैरा --

और आस-पास जो पेड़ है वो छोटे-बड़े कॉमन डिजाइन में लगायी गयी है नीचे भी लाइट टाइल वगैरा भी काफी अच्छी लगायी गयी है।

इस फोटो में काफी सारी छोटी छोटी गुड़िया दिखाई दे रही है कुछ ऊपर कैप्चर में लगाने वाली टोपी वगैराह छोटी बड़ी और कुछ कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं फोटो --

सीढ़ियां वगैरह दिखाई दे रही हैं।

और कुछ अह पेड़ वगैरह है जो कोई आकृति में काटा काटे गए हैं कटिंग साइज में लगा कर रखा दिखाया गया है।

इस फोटो में काफी सारे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि कुछ करतब वगैरह करते दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर आसमान भी काफी साफ दिखाई दे रहा है आस पास तो कुछ घर भी दिखाई दे रहा कुछ महिला कुछ पुरुष भी है।

यहां पे काफी अच्छा और शानदार लिया गया दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ वगैरह भी दे--

बाहर कुछ करने की मशीन वगैरा है जहां पर गाड़ी है।

कुछ महिलाएं पुरुष बच्चे छोटे बड़े और--

इस फोटो पे किसी के जन्मदिन का काम चलाता दिखाई दे रहा है पार्टी वगैरा चल रही है छोटी बच्ची --

और एक बड़ी महिला है जोकि केक जलाने और काटने का काम करती दिखाई दे रही है लाल कलर की तीन चार से टेबल वगेरा लगाकर जन्मदिन पार्टी मनाते हुए --

छान के या कुछ काम करती दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में कुछ महिलाएं और एक पुरुष दिख रहा है क्योंकि उनका फोटो काफी पास से लिया गया है।

इस फोटो में जीवन रक्षा करके या जीवन बीमा करके नाम दिखाई दे रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बनाया गया --